कोई दिखाई दे रहा है। दुकान पीले रंग की दीवारों की हैं और ऊपर एक बोर्ड भी लगा हुआ है। आजू बाजू दुकानें बनी हुई हैं जो बंद हैं। आदमी भी दिखाई दे रहे हैं।

जोकि गुलाबी व नीले रंग की है। बगल में चौड़े-चौड़े गमले लगे हुएं हैं।

यहाँ छत से नीचे हरा-भरा मैदान दिखाई दे रहा है और आजू-बाजू बहोत सारे पौधे लगे हुए हैं। एक बड़ा पौधा भी दिखाई दे रहा है जिसमे हरे-हरे पत्ते लगे हुए हैं।

बगल में एक दरवाजा भी दिखाई दे रहा हैं दूर -दूर तक मशीने ही मशीने दिखाई दे रही हैं ऊपर छत टिन की ढली हुई हैं।

बड़ा सा घना सा पेड़ दिखाई दे रहा हैं जिसमे बोहोत सी झाड़िया लगी हुई हैं। बल्लियों की रेलिंग लगी हुई है। बड़ा सा पेड़ दिखाई दे रहा हैं ।